आदमी ऑरेंज कलर का शर्ट पहना हुआ है।

इस शोरूम में बहुत सारी लाइट भी लगी हुई है।

यहां पर एक ऐ_सी और एक टी_वी भी लगा हुआ है।

यह तस्वीर किसी दुकान के बाहर की है।

यहां पर तीन लड़के और एक लड़की दिखाई दे रही है।

ये तस्वीर किसी मंदिर के प्रांगण की है यहां पर दो मंदिर दिख रही है।

यह तस्वीर किसी शादी फंक्शन की है।

यह तस्वीर किसी मैरेज हॉल की बाहर की है।

गेट के बाहर बहोत सारी बाइक खड़ी है।

यहां पर बहुत सारे चेयर भी रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक हार्डवेयर की दुकान दिख रही है।